बनाई हुई है और ये एक टेबल पे रखी हुई है।

सुंदर पार्क है और बहोत ही अच्छी यहां पे जगह बनी हुई है गार्डन बना हुआ है। घास उगी हुई है।

ये एक बहोत ही बड़ा शोरूम है जिसकी ओपनिंग की जा रही है और फूल लगे हुए हैं डेकोरेशन की गई है फूलों के साथ--

अच्छे तरीके से कि है और सुंदर भी लग रही है।

ये एक बहुत ही सुन्दर चर्च है चर्च में सभी पास्टर हैं और खड़े है और--

और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेज पे डांस कर रही है अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है।

और सुंदर यहां पे सब कुछ दिख रहा है अच्छा वातावरण यहां पे बना हुआ है।

पढ़ाई कर रहे हैं ये सब बच्चे सुंदर तरीके से--